यहाँ पे हम एक होटल का रूम देख पा रहे हैं इस रूम में हम एक बड़ा सा अलमारी देख पा रहे हैं इसके इलावा यहाँ पे हम एक--

मिरर देख पा रहे हैंजिसके पास में हम दो वाटर बोतल और एक--

यहाँ पे हम एक शोपिंग मॉल देख पा रहे है जहाँ पे हम--